फादर फादर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी तस्वीरे लगी हुई हैं खिड़खिया लगि हुई हैं बहुत सारे तीन चार पंखे लगे हुए हैं एक प्लस का चिन्ह बड़ा सा लगा हुआ हैं लाइटे लगी हुई हैं परदे ल दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे भी पूरा गिला हो रखा हैं नीचे भी टाइल्स लगी हुई हैं ब्राउन कलर की और सीमेंट से पूरा सीमेंट का लगा हुआ हैं।

एक ने स्कर्ट टॉप पहने हुए हैं एक ने टी शर्ट और जींस पहना हुआ हैं एक ने शर्ट जींस पहना हुआ हैं तीनों अलग-अलग त डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं।

हरी कलर की चटाई बिछी हुई है जिससे की बहुत सारी श्रद्धालु बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं कुछ-कुछ की चप्पल है भी पड़ी हुई है और डिस्पोजल पड़े हुए दिखाई दे रहा है।

ये दरवाजे दिखाई दे रहे बड़े-बड़े खम्बे दिखाई दे रहे है कुछ निसन्या भी लगी हुई है सीढ़िया दिखाई दे रही है और दो लोग भी दिखाई दे रहे --